ऊपर लाइट लगी हुई है।

निचे हरे-हरे और पीले-पीले घास हैं और पेड़-पौधे हैं।

एक आदमी खड़ा है जिसने वाइट कलर का इयरफोन लगाया है और स्वेटर पहना है।

पुल बने हैं। नीचे नीली कलर की जीन्स पहनी हुई है।

निचे लोहे का शटर लगा हुआ है। धरती पथरीली है और रेतीली है।